साइड में कुछ पौधे भी नजर आ रहें हैं बड़े बड़े पेड़ भी नजर आ रहें हैं।

बहुत सारे गुब्बारें लगे हुए है सिल्वर व ग्रीन कलर के गुब्बारे --

जिस पर ओरिंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लिखा हुआ हैं।

छत पर बहोत सारी लाइटे लगी हुई है साइड में बहोत सारे कर्टन्स नज़र आ रहे है।

सामने एक बिल्डिंग नज़र आ रही है बिल्डिंग पर येल्लो कलर का पेंट हो रहा है बिल्डिंग में बहुत सारे खिड़की और दरवाजे नज़र आ रहा है सामने एक गेट बना हुआ है।

कही-कहीं पर छोटे-छोटे पत्थर पड़े हुए है एक बाइक खड़ी है बाइक का कलर रेड है ऊपर एक पोल नज़र आ रहा है।

साइड में एक आदमी बैठा हुआ है जिसने नोटबुक पे कुछ लिख रहा है साइड में एक आदमी खड़ा हुआ है एक औरत भी खड़ी --

बहुत सारे काउंटर्स लगे हुए है काउंटर्स के ऊपर शीशा लगा हुआ है।